यह एक बिल्डिंग है और लिखा है बिहार सरकार वाणिज्यि कर विभाग कार्यालय जो राज्य कर अपर आयुवयक्त --

और यह पब्लिक के लिए काफी सुविधा होती है जब चाहो तब पैसे निकाल सकते हैं आप यहाँ से।

यह एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और सुबह का टाइम है | बहुत सारे व्यक्ति --

ग्राउंड बहुत बड़ा है बच्चे खलते है यहाँ आके |

और दुकान में इसमें खिलौना भी मिल रहा है और चूड़ी मिल रहे हैं और बहुत सारे प्रकार के टॉयज र-र रबड़ या फिर ब्रेसलेट बगैरा- बगैरा सब मिलते हैं यहाँ पे ।

और यह सामने एक ऑटो है ऑटो के पीछे लिखा हुआ है जादूगर शंकर सम्राट।